और खिड़की में पर्दे लगाए गए है। यहाँ पर एक आदमी जिसने कोट पैंट पहना हुआ है। हाथ में पेपर लिया हुआ है।

यहाँ पे अगल-बगल में ढेर सारे पेड़ झाडिया भी दिख रहे है। यहाँ जमीन है।

यहाँ पर एक हॉल जैसा लग रहा है बाहर में एक सीढ़ी बनायीं गयी है और सामने में एक डोरमैट रखा गया है जो की ग्रीन कलर का है और यहाँ ठेर सारे लाइट लगाई गई है।

यहाँ पे पेड़ और पत्ते भी सूक गए हैं पीछे दूर-दूर तक बस पेड़ ही पेड़ दिख रहा है।

यहाँ पे अम्म बड़ॆ -बड़े पहाड़ दिख रहे है इसके बगल में ढेर सारे पेड़ -पौधे झाड़ियाँ दिख रही हैं ।